चर्च में जीजस की मूर्ति बनी हुई है और लगी हुई है।

इस दृश्य में एक बैलून से डेकोरेशन किया हुआ हाल दिखाया गया है।

इस दृश्य में एयरपोर्ट दिखाई दे रही है जो कि रांची एयरपोर्ट है।

अंदर बहोत सारे पैकेट्स टंगे हुए हैं।

उस जनरल स्टोर में बहुत सारे झोले टंगे हुए दिख रहा है।

लाल कलर के कपड़े बिछे हुए हैं।

इस चित्र में एक म्यूजियम दिखाई दे रही हैं जहां पे शो पीसेस रखे हुए हैं।

इस दृश्य में एक क्लासरूम दिखाई दे रही है जिस क्लॉस रूम के अंदर बैंच लगी हुई है।

उन बेंचेज का कलर ब्लू दिखाया गया है।

दीवाल पे एक फायर केस लगा हुआ है।

इस चित्र में एक गार्डन दिखाई दे रही है।

ईट की दिवारे नजर आ रही है।

यहां पे बहुत सारे अलग अलग तरह के साइकिल रखे हुए हैं।

एक महिला और पुरुष खड़े हुए हैं।

एक टेबल बना हुआ है।

इस जिम के अंदर बहोत सारे डंबल्स रखे हुए हैं।

बहोत सारे प्लेट्स रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

बहोत सारे हरे रंग के मैट रखे हुए हैं।

ऊपर चढ़ने के लिए सीढी दी हुई है जहां पे दो व्यक्ति खड़े दिखाई दे रहे हैं।